जिम में ट्रेनिंग कर रहा है आस पास जिम की सारी मशीने रखी हुई है।

और जिम का आज इनोग्रेसन है जिस की वजह से जिम में काफी सजावट की हुई है सभी--

इनोवेशन में सम्मिलित हुए हैं बड़ा ही सुंदर नजारा है।

ये एक पहाड़ है पहाड़ के बीचों बीच एक झरना बह रहा है।

पूल है पूल है वहा पे काफी लोग वहा पे दोस्त मस्ती कर रहे है।

यह एक पार्क है इसमें दो झूले लगाए हुए हैं जिस से बच्चों का मनोरंजन हो सके।

पार्क में एक शांत तरीके से बैठने की व्यवस्था की गई है।

जिस तरह से बाहर गाड़ी पार्किंग की गई है।

बनाए गए हैं दीपक काफी सुंदर है।

इस दीपक में तीन तरह के दीपक है एक छोटा एक उससे बड़ा फिर एक उससे बड़ा।

यात्रियों की आने की प्रतीक्षा है जब यात्री यहाँ आएंगे तो नाव समुद्र में चलायी जाएगी।

काफी अच्छी ग्रीनरी भी है बड़े बड़े पेड़ हैं।

ग्राउंड भी काफी बड़ा है सुंदर है बेहतरीन है।

और फल फ्रूट यहां पर रख कर छटी मया की पूजा कर रहे है।

काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है और बाल्कनी को भी इस तरीके से कवर किया गया है जाल लगा के--

दो गाड़ियां इसमें खड़ी हुई है एक लाल रंग की है।

योगा में एक ही मुद्रा में सभी खड़े हुए हैं।

ऊपर काफी अच्छी लाइटनिंग चल रही है।

काफी सारी पार्किंग है जिसमे काफी सारी बुलेट मोटर साइकिल खड़ी हुई है।

कोई अपने लिए काफी अच्छा घर बना रहा है।

अभी इसमें लेंटर डला हुआ हैं जिसकी वजह से इसमें बल्ली लगाई हुई है लकड़ियाँ लगाई हुई हैं।

पेड़ है होटल की बिल्डिंग सफेद रंग की है।

पार्क में काफी पेड़ लगाए हुए हैं लाइट काफी लगाई हुई हैं।

बाहर काफी वृक्ष हैं।

अंदर काफी अच्छी लाइटिंनींग है सुंदर सुंदर पिक्चर्स है।

छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा की शुभ अवसर पर नगर पंचायत सोनपुर आपका हार्दिक अभिनदंन करती है।

काउ उत्सव है छठ माहपुरब यहां मनाया जा रहा है।

काफी लोग हैं पीछे का बैकग्राउंड काफी सुंदर लग रहा है काफी सुंदर सजावट है।

जैसे कॉपी पेन पेंसिल रबड़ कटर --

एक हॉस्पिटल है हॉस्पिटल के बाहर काफी लोग बैठे हुए हैं बाहर शेड डाली हुई है।

यह एक गार्डन है गार्डन में काफी पेड़ हैं।